अच्छा दिख रहा है यहाँ काभी जा के देखना पड़ेगा क्या-क्या रहता है और एयरप्लेन में बैठने का मजा ही अलग है।

देखना पड़ेगा क्या बता रहे --

औ बहुत बड़ा जगह दिख रहा है पेट्रोल पंप के लिए --

ए तो कोई दुकान उकान का लग रहा है यार अनु मनु एग्रो का लिखा है।